और ये केक जो अंदर में रखा हुआ है और दूर में एक कार भी दिख रही है और और ये एक बहुत सारे --

और दूर में कुछ पेड़ लगे हुए दिख रहे हैं और ऊपर में आसमान दिख रहा हैं और ये जो --

टेट का मैदान लग रहा है। साइड में कुछ घास रखी हुई सामने में स्टम्प लगा हुआ है और लाइन्स भी खीची हुई है और दूर में भी कुछ दिख रही है की --

कुछ आ पॉट टाइप दिख रहा हैकुछ टोकरी दिख रही है और कुछ चेयर भी दिख रही है या इस में एक आदमी बैठ हुआ है।